यहां पे ये एफ_आर_डी_जी लिखा हुआ है।

ये ओल्ड जिम हैं यहाँ पे स्लिम स्पिल पॉस लिखा हुआ हैं।

बच्चे भी हैं एक औरत ने लाल रंग की साड़ी भी पहनी हुई है एक आदमी ने पीले नीले रंग की --

यहां पे कैंप लगा हुआ है।

यहा पे सीसे लगे इस पे सीसे लगे हुए है।

यहां पे फोन ही फोन दिख रहे हैं ये वीवो के फोन है।

सब एक ही सफेद है और ब्लैक रंग की ड्रेस है।